फसल हैं बिल्डिंग हैं पेड़- पौधे हैं फसल बोई गई हैं जो कि बहुत अच्छी आई हैं ।

ऑटो है ऑटो बहुत सारी है दो आदमी खड़े है।

यहाँ पर बहुत सारे विंडो हैं और गेट भी हैं और बहुत सारे कमरे भी हैं जो की काफी बड़ी बिल्डिंग है और गेट ओपेन है।

शहर है दुकाने हैं उस पुरुष हैं महिलाये हैं पोस्टर लगे हुए टावर खड़े हुए हैं।

इमारते है जो की काफी बड़ी है बड़ा टावर है बड़े-बड़े पेड़-पौधे है और यहाँ पर बोहोत व्यक्ति है जो की कुछ खेल रहे है कुछ बचे है जो की ग्राउंड में खेल रहे है।